एक आदमी खड़ा होकर देख रहा है दूसरा आदमी फिर वीडियो बना रहा है ढेर सारा बच्चे हैं पढ़ रहे हैं।

काला टोपी पहना हे चश्मा लगाया हे वाइट जरसी हे पत्थर पे बैठा हुआ हे.

एक मीनार ऊपर मस्जिद पर लगा हुआ है बगल में लीरैची है।

और ढेर सारा पेड़ है और एक बोल लगा हुआ है लाइट --

और बगल में भी दुकान है ढेर सारा मोबाइल रखा हुआ है पेकिट मे पे --

ये सेनुल दुकान है और दुकान म वहां पोस्टर है.

और बाल कटवा रहा है और पर्दा है और दरवाज़ा है.

जो एक छड़ है घर बन रहा पीछे पेड़ है।

पीछे बहुत सारा घास है जोकि सेल्फी ले रहा है बिचारा.

दो लाइट लगा हे पीछे के साइड ढेर सारा फोटो लगाया हुआ हे दो कुर्सी हे आइनाक हे.

और एक टेबल पर फूल रखा गया हैं और आदमीन खड़ा हैं और आदमीन स्टेज पे हैं.

यहाँ पे कोई चीज का फंक्शन हो रहा है.

यह स्विमिंग पूल है ढेर सारा आदमीन है इसमें फिसलते हैं आदमीन.

ट्रेन है तीन लेडिस है और एक झंडा लगा हुआ है सीडी है.

बहुत सारा पेड़ लगा हुआ है हरा भरा खेत है उधर-

है जो लड़की कराटा कर रही है.